इस चित्र में सामने एक पार्क नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति एक केबिन में बैठ कर काम करता हुआ नज़र आ रहा है।

सर पे टोपी लगाए और आंखों में चश्मा लगाए एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

पार्क के चारों तरफ घना जंगल और हरे भरे पौधे नजर आ रहे हैं।

जहां पर सामने कुछ लड्डू पेड़े गुलाब जामुन और बर्फी रखी गई है।

चित्र में मैकडोनाल्ड नजर आ रहा है।

बहोत सारे साइनेजीस बोर्ड बिल्डिंग में लगे हुए नजर आ रहे हैं।

चित्र में एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है।

जहां पर मंदिर की छत पर एक झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है।